जो सर्व उस पे सर्विस लिखा हुआ है।

एक टोपला रखा हुआ हे जो ल ल गुलाबी कलर का हे।

सामने पानी है और चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

जो गेंदे के फूल हैं पीले कलर के और ऑरेंज कलर के उसके अलावा एक लाल कलर का गेट है।

हमारे सामने एक दुकान है उसके अलावा कचरा रोड है दुकान में कुरकुरे है सफेद बोरिया है।

यहां पर हमारे सामने मराठे का प्रोग्राम हो रहा है जिसमे बहोत सारे व्यक्ति है और महिलाए है।

उसमें कुछ सफेद हम्म कागज है जिसपे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल टाइप कर के।